जहां कुछ बैग्स फोन रखे दिख रहे है और नीचे की साइड ब्राऊन ऑरेंज कलर की ढोलक--

जिसे एक अंकल सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग के बाहर एक ब्लैक कलर के बोर्ड में ऑफिस ऑफ द --

एक ऑफिस है ऑफिस में एक व्हाईट कलर की टेबल है टेबल पर एक बॉटल में।

यहां एक ब्लैक कलर का गेट दिख रहा है घर के बाहर एक बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।

एक बड़ा सा खंभा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बड़ी सी नाव दिखाई दे रही हैं।

यहां पर कुछ लोग शादी में आए हुए दिखाई दे रहें हैं।